और उसने कैप भी पहनी है जो कि सिल्वर रंग की है उसके ऊपर बाय लिखा हुआ है। पीछे तरह-तरह के कलर की सीट रखी हुई है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि ये एक चर्च है उसके अंदर बहुत से लोग खड़े हुए हैं एक लड़की ने वाइट रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है।

और कुछ लड़के हाथ में कैंडल लेकर खड़े हुए हैं जिन्होंने वाइट रंग का जुबा पहना है और येलो रंग का ऊपर कुर्ता डाला है और उसके पीछे लाल --

और सामने एक तेल की बोटल्स भी है। दो तीन और पीछे से एक स्टैंड भी लगा हुआ है जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि ये एक जिम है जोकि वाकिंग मशीन है इसके अंदर बहुत सी साइकिलस हैं इधर --

बैठकर पेटलस मार सकते हैं और यहाँ पर फर्श के ऊपर मैंटे भी डाली गई हैं और इसके अंदर दरीचा भी है और इसके दीवारों पर --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं ये एक एसबीआई बैंक है जिसका रंग नीला है बोर्ड का और एसबीआई व्हाइट सफेद रंग से किया गया है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कोई स्टोर है शायद ये इसके अंदर बीच में दो टेबल है। टेबलों के ऊपर कुछ रखा गया है और इसकी सीलिंग पर --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि ये एक बोहोत बड़ा सा स्कूल है जिसका कंपाउंड है ये जिसके लाल और पीली टाइल्से लगी हुई है ऊपर शीट्स लगे हुए हैं।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

के पीछे ही नीले रंग की बिल्डिंग --

वो आ रही है अंदर से और बहोत दूर दूर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। इसके नीचे जमीन पे हलियारी भी है क --

और आगे हल्की-हल्की सी लाल रंग की अबर दिख रही है और ऊपर व्हाइट रंग भी दिख रहा है अबर का और उसके आगे खंभा है और बहुत अंधे --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं बोहोत बड़े पहाड़ों के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट रंग की सूट पहने हैं।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि ये एक केनरा बैंक की ए.टी.एम है। इसका बोर्ड हल्का सा नीले रंग का है।